ए बैंच दिखाई दे रही है ए-डम्ब्बेल दिखाई दे रहे हैं।

बेग और डम्बल नजर आ रहें हैं।

इसके पानी का रंग मटमेला है पीछे कई पेड़ नजर आ रहें हैं नीला सफेद रंग का आसमान दिख रहा है।